ये एक स्कूल है इस स्कूल का जो नाम आप देख सकते हैं किरण पब्लिक स्कूल के नाम से है और इसका जो मेन गेट की जो पिलर बना हुआ है वो ब्लैक कलर में बना हुआ है।

और इसका जो मेन गेट है वो रेड कलर में है यलो कलर में है और ई कॉलेज ग्री ब्लू में बनाया गया है।

ये एक खंडर बना हुआ है इसके अंदर में हम देख सकते है की दिवाले लगी हुई है और ये ठीक तरह से पलस्तर भी नहीं है इसमे पूरी तरह आपको देखने को हरे पेड़-पौधे मिल जाएंगे।

ये एक मंदिर है इस मंदिर में आप देख सकते हैं काफी सारे लोग बैठे हुए हैं।